सामने आपको यल्लो कलर का डस्टबिन भी दीखाई दिया इस इमेज मे दीख रहे।

ये एक उलेण की दुकान है व्हाइट कलर के उलण रखे हुए है बहुत सारे और पीछे फल वगेरा भी रखे हुये फल अ फल है जैसे की बनाना है।

झू में हम आये है इसके पिचर लेने के लिये आज कल चिते बहुत कम मिलते है देखने के लिये चिते बैठे है।

चार पाच जगह हर जगह झेंडे फेर रये है रेड कलर के मंदिरोमे येसा होता है ये ब्ल्यु कलर की स्टील की आपको वो दीखाई दे रहे है।

पार्क भी बना हुआ है उदर बच्चो के लिये पार्कय इदर बडे बुढो केलिये घुमणे की घुमणे का स्पेस जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में --

काफी सुंदर लग रहा है और काफी प्यार मीवी बहुत यहाँ सुंदर लग रहा है।

बगल मे आप देक सकते है यहा कोई स्टोअर है जो जन्नत करके है स्टोअर जो इस पिक्चर मे आप को दीक भी रहा होगा।

कूच बडे-बूढ़े वॉक कर रहे हैं यहा एक आदमी आप उ एकदम नीचेमे भी दिख रहा है वो साईड से खडा है ऐसेही।

बहुत सारी बाईकस स्कूटी वगेरा खडी है बहुत सारी हर चीज खडी है यहापे आप देक सकते हो स्वराज ट्रॅक्टरस कॅनड --

सेल काडने केलीये इन्स लोगोने रखा है बहुत अच्छी अच्छी चिजे है।

हेल्मेट लगाणा काफी जरूरी होता है।

देख नहीं पा रहे काफी अच्छा लग रहा है देख करके पेड़ पौधे आदि लगे हुए है।

ये एक स्कूल है जो देखे काफी बड़ा है पुत्तार पब्लिक स्कूल सामने आपको कुस्त दिखाई दे रहा है इसी बीच में हमने लिया है।

पांच बोरियां रखी हुई है जिसमें से कुछ लोग निकाल रहे है कुछ सर पे उठा रहे है कुछ अंदर लेके जा रहे है ऐसा कर रहे है।

पहले के जमाने में भोत बजाया जाता था अब भी बजता है बट आजकल तो फ़ोन होने के कारण ये सब कहाँ गायब हो गए हमें भी नहीं पता।

हेल्प कर रही है ईद काफी सजी हुई है और यहाँ सामने आप देख सकते हो पिंक कलर के--